पीछे में एक छोटा सा फैन लगाया हुआ है।

यह एक क्लास रूम है और बहुत सारे बच्चा एवं बच्चियां पढ़ने के लिए बैठी है।

दो- तीन बच्चे ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए है?

सामने में बहुत सारे व्यक्ति फुटबॉल खेल रहे हैं।

देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

सामने में बहुत सारे टोटो है और एक टेंपो है।

सामने में एक छोटा सा गामर का गाछा--

आगे में तीन खुट्टे बांस के गाड़े हुए हैं और सामने का जो गेट है वो मिट्टी कलर मे है।

उसके बगल में बहुत सारी तार लगाया हुआ है।

में एक गार्ड खड़ा है जो ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है।

खम्भे व्हाइट कलर का है हरा कलर का है ब्लू कलर का है।

आगे में व आउट डोर लगाया हुआ है।

सामने में एक पेड़ है जो हरा है और नीचे में बहुत सारे कुर्सी लगाया हुआ है।

ऊपर में हाथ में बांधने का भी धागा रखा हुआ है और पिछला जो हिस्सा है वो वाइट कलर का है।

दुकान का अंदर में दो चौकी रखे हुए है।

सामने में बहुत सारा कंप्यूटर रखा हुआ है।

उसके बगल में एक लाइट लगाया हुआ है जो व्हाइट कलर का है।

यह एक हनुमान जी का मंदिर है और सामने में एक औरत एक मर्द पूजा कर रही है।

मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा लगा रहा है।